जोकि मोबाइल में से सेल्फी ले रहा है।

यहाँ पर हमें बांस का टोकना भी दिखाई दे रहा हैं।

और यहाँ पर हमें बहोत बड़ा गोल चकरा दिखाई दे रहा है जिसपे हमे घास उगी हुई दिखाई दे रही है।

और उस पर बहोत सारे पौधे भी उगते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

और शेर और यहाँ पर हमे अ बहोत सारे लाइटें --

यहाँ पर हमें टेबल नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें सफेद और ब्लू कलर की कुर्सियाँ नज़र आ रही है।

यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो की क्रीम कलर की है।

और वहां पर हमें नव सरपंच दिखाई दे रहा है जिन्होंने पूरे व्हाइट कपडे पहने हुए हैं।

जो की वाइट कलर और ग्रे कलर का है यहाँ पर हमें बहोत सारे पीलो रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर सभी लेडिसों ने अश्वगंधा का सिंदूर लगाया हुआ है।

यहाँ पर हमें एक यलो और एक ब्राउन कलर का मकान दिखाई दे रहा है।

और ज्यादा बड़े-बड़े पेड़ भी हमें नज़र आ रहे है और जो कि यहाँ पर बहोत हरे-हरे है और हमे यहाँ पर--

यहाँ पर हमें आस-पास बोहत सारे पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें धूप भी दिखाई दे रही है।